यह तस्वीर बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रही है।

यह जगह बहुत ही रोमांचक और खूबसूरत लग रही है।

कस्बे का छोटा सा ग्राउंड जैसा दिख रहा है शायद--

मशीन किसी प्रकार की कटिंग कर रही है।

यह किसी चश्मे की दुकान की हैं।

यह तस्वीर बहोत ही खूबसूरत लग रही हैं।

यहां लोग तरह तरह के व्यंजन खाने आते होंगे ऐसा प्रतित होता हैं।

यह मंदिर शायद किसी काल भैरव भगवान का मंदिर है।

यहां वेयरहाउस अभी अभी बना होगा शायद ऐसा लग रहा है।

शायद यहां पर कोई शादी समारोह होने वाला है।

यहां बहुत सारे बच्चे और बड़े योगासन सीख रहे हैं।

शायद यह किसी बाइक का शोरूम लग रहा हैं।

शायद कोई विद्यालय दिखाई दे रहा है।

यहां फिर इन्हे लोग गिफ्ट भी--

यह तस्वीर शायद किसी इलेक्ट्रॉनिक के दुकान की दिख रही हीं है।

यहां तस्वीर बहोत ही सुंदर दिखाएं दे रही है।

तस्वीर में एक खूबसूरत सा हिरण दिखाई दे रहा है।